हुआ है और केले की जो पत्ते है उनसे इनको सजाया गया है और काफी लोग यहा नीचे की साइड है और नीचे आप देख रहे शे --